इहाँ डस्टबिन रखत बानी जिसमें कचरा रहत बानी इस ए.टी.एम. के पास में बहुत सफाई बानी।

ईहां सपाइ रहलि बानी ईहां लाल कलर के दिवार बानी

इसके आस-पास बहुत सारी हरियाली बानी इ न बहुत सारे घर बानी।

दो लाल क रंग के स्टूल बानी इ यहाँ काला रंग पुतत बानी।

ये एक स्कूल है एइस स्कूल में कुछु बच्चे --

ए रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिये हुए हैं।

इहां अलग-अलग झुण्ड में बच्चे बहोत ही सुंदर --

इ एक हाईवे बानी इहाँ बहुतेइ सारे भीड़ इकट --

तार आइल कछु लोग इ न आत जात रइल बानी इहाँ बहुते बड़ी --

पानी की टंकी बानी ईहां लाइट --

घर से बागवानी जामे कुछु लोग बानी इहाँ बहुत सारे गाछी बानी इहाँ पास में घर बा।

इ कौनो नदी लगिल बानी इ नदी में बोहोत सारा कचरा बानी।

तार इधर-उधर जात बानी इहां एक कच्चा घर बनत बानी।

और उसके पास में बहुत सारे घर बानी ईंटें ही ईंटें दिखत रहील।

इ यहां पर एक बहुत बड़ा बैनर लगत बानी जे बैनर पर प्रगति लिखत बानी इ यहां टेंट लगत बानी लाल गुलाबी पीले रंग।

ई एकपुर रेलवे स्टेशन रही | यहाँ चार कुत्ते बैठे रही ।

अअ बहुत सारे दूर-दूर तक लोग बानी कछु गाड़ी खड़ेल रहील।

ई एक मैदान बानी | यहाँ पार्क जैसन लागत रही | यहाँ बहुत सारे बडे-बडे--

इहाँ यह स्कूल बानी इ स्कूल के बाहर बहुत सारे लोग बानी।

एक आदमी इहाँ रंगोली बनात बानी इ रंग का कलर हरा सफ़ेद ऑरेंज बानी।

इहाँ पर कोई कल्चरल प्रोग्राम रखत रहील इहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े रहेल उन लोगो के मुँह में --

ई कोनो बहुत पुराना घर बानी | यहाँ इधर-उधर --

इ एगो छोटन सा तालाब बानी इ तालाब में बहुते सारों --

यहां एकु बाबू के खेलन का पार्क बा इहा बहोतइ सारे छोटन-छोटन बाबू खे।

के ऊपरे तीन सूर्यमुखी के फूल के खें पास में मुल्के सारे बड़े-बड़े --

इ एकु किताबों के दुकान खे इहां बहुतेइ सारे जने खड़े बानी।

इहाँ एगो लाइन के टॉवर खें इहाँ बहुते सारे पेड़ लगे हैं।